इन्होने पाव पकड़ा है यहा पर और एक हाथ लेफ्ट साइड है यहा पर हमे पंखे दिखाई दे रहे है यहा पर हमे बहुत सारी लाइटे दिखाई दे रही है छत पे नीचे हमें यहा पे कुछ लगेज दिखाई दे रहे है।

आप देख सकते है यहाँ पर हमे शादी का एंटरन्स गेट दिखाई दे रहा अंदर हमे रिसेप्शन होता पूरा हुआ यहाँ पर हमे एक आदमी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमे लाईटे लगे दिखाई दे रही यहाँ पर हमे--

मे हम देख सकते है यहाँ पर हमे मेला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमे मेले मे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है। यहाँ पर हमे झूला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम झूले पे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है। यहाँ पर हमे टिकिट काउंटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमे--

दिखाई दे रहा है यहा पे डिवैडर दिखाई दे रहे यहा पर एक आदमी बाइक चलाता दिखाई दे रहा है यहा पर हमे एक और बाइक पर तीन लोग सवार दिखाई दे रहा यहा पर खुला आसमान दिखाई दे रहा यहा पे बड़े-बड़े झाड़ दिखाई दे रहे।

तस्वीर में हम देख सकते यहाँ पर हमे बहुत सारे महिलाएँ दिखाई दे रही है जो की उनका हाथ पे अह मोमबत्ती दिखाई दे रही है जो की व्हाइट ड्रेस पहनी दिखाई दे रही है।

वीर मे आप देख सकते है यहा तस्वीर हमे जिम की दिखाई दे रही है यहा पर हमे कुछ लोग जिम मे एक्सर्साइज़ करते दिखाई दे रहे है पीछे हमे एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है यहा पर हमे--

बाइक दिखाई दे रही यहा पर हमे घास दिखाई दे रही है नीचे हमे मिट्टिया दिखाई दे रही है यहा पर महिला के हाथ में बच्चा और एक में थैले दिखाई दे रही है जो की पीले रंग की दिखाई दे रही है यहा पर गेट दिखाई दे रहा है।